और यहाँ पर मुझे कुछ रिक्सा भी दिखाई दे रही है और ये आसमान बहुत ही अच्छा साफ सुथरा और सूंदर दिखाई दे रहा है और यहाँ मुझे कुछ घर जैसे बने हुए भी देखे जा सकते।